नीचे उतरता है और यहाँ पर मट्टी है और यहाँ --

लगता है डूबी नहीं है हल्का-फल्का और बगल में बहुत सारे पेड़ है और बहुत बड़े पहाड़ है और --

और प्लेट व्हाइट कलर के हैं उसमें दो चम्मच दिया हुआ है और बहुत सारे बटरफ्लाई के जैसे बगल में कुछ मिठाइयां --